ये एक कारिम डेयरी है डिपार्मेंट डेयरी पॉपुलर है सेंटर दिखाई दे रहा है यहां पर विभिन्न प्रकार के दूध दही मक्खन घी वगैरा डब्बे में मिलता हैं उसके पास में काफी सारे लोग हैं।

एक लड़की है एक टेबल पे बैठ के सेल् उम उधर देख रही है इधर बाइक रखी है उधर लड़के हैं उधर पेड़ भी दिखाई दे रहे --

जैसे देखिये आचार का डब्बा रखा दिखाई दे रहा है स्प्राइट दिख रहा है चिप्स दिख रहा है कुरकुरे दिख रहा है फ़िज़ दिखाई दे रहा है सिर्फ पीने-खाने वाले यहाँ पे चायपत्ती का पैकेट दिखाई दे रहे है काफी अच्छे से सजाया गया है शॉप को।

भगवत वासुदेव का तस्वीर है अन्दर यहाँ पे लोग पूजा पाठ करते हैं मंदिर छोटा सा बना हुआ है बगल में छोटे-छोटे पौधे हैं उधर बड़ा-बड़ा पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क के साथ-साथ काफी सारे पेड़ हैं जो की काफी हरा-भरा पेड़ दिखाई दे रहे हैं और उसके देखिये विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं कार है फोटो है बोलेरो है इधर साइड में काफी दुकान भी है जैसे फ्रूट का दुकान है।

इस बस स्टैंड से काफी बसे यहां से निकलती है हर रूट का हर स्टेट के लिए |

बगल में देखिये ये सब छोटा-छोटा थोरा-थोरा जगह से पानी भी दिखाई दे रहें हैं|